रोड पर हमे कुछ लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी फोर व्हीलर और ई- रिक्शाज भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहर बोर्ड पर प्रकाश ड्राई क्लीन लिखा हुआ है बाहर की तरफ कुछ गमले लगाए गए हैं।

और मंदिर में अंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जिनके बाहर भगवान चंद्र प्रभु नाथ भगवान शांतिनाथ लिखा हुआ है। बगल की तरफ एक दान पेटी भी लगाई गई है।

जिसमे कुछ मे आईडिया एयरटेल होटल फ्रेश हर्ष आदि लिखा हुआ है बाहर की तरफ कुछ बाइके पार्क की गयी हैं और एक बड़ा सा काला गेट भी दिखाई दे रहा है।

एक इंडियन ऑइल का पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जिसकी बाहर की साइड एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है जिसमे अनडियन. ऑइल लिखा हुआ है।

मंदिर पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाॅं भी दिखाई दे रही हैं और एक पीछे की तरफ एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर एक नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है जिसमें डॉक्टर पंकज कुमार लिखा गया है।

पैटीज़ और कुछ बैकरी का सामान ट्रैस मे रखा गया है।

और इस मैदान में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं | पीछे के साइड बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसे लाल और सफेद रंग से पेंट किया गया हैं रेलवे स्टेशन पर हमें नीले रंग के डस्टबिन भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं।